बाजार के ऊपर ही उर्दू मे कुछ लिखा हुआ हमे दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमे हेंडीक्राफ्ट से बनी चीजें दिखाई दे रही है।

कुछ लोग मछलियों को काटते नजर आ रहे है।

जिसका डेली सर्विसेस चलता है।

जैकेट्स दिखाई दे रही है जैकेट्स के अंदर हमें शर्ट्स भी दिखाई दे रही है।

कुछ बाउंड्री वॉल्स भी हमें --

उल्टे हाथ पर हमे हनुमानजी नजर आ रहे है।